तथा ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

ता इस मकान से यहाँ तालाव और सुन्दर दिख रहा है।

और इसमें बोहोत सारे बुके हैं।

सारे बच्चे पढाई कर रहे हैं।

यह नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है।

पता है आप बहोत अच्छी लग रही है।

जैसे कोई स्कूल या कॉलेज है।

मुझे इस इमेज में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

इन व्यक्तिओं के पीछे एक बड़ा सा मकान है।

इसमें बद्दल भी दिखाई दे रहे हैं।

बद्दल भी दिखाई दे रहे हैं।

अन्दर कुरछियाँ रखी हुई हैं।

लता बद्दल भी दिखाई दे रहे हैं।

ता इसमें कुछ पंछियाँ हैं।

बच्चे पढाई कर रहे हैं।

यह जगह बाइक रखने की पार्किंग है। .